ये डी_एस_पी सोडा ऑफिस का कॉफी शॉप दिखाई दे रहा है सामने की बहुत सारे व्यक्ति बैठकर आ बैठकर पिज़्ज़ा जैसा कुछ खा रहे हैं।

इस चित्र में दिखाई दे रहा है सामने की तरफ बहुत अच्छे टाइल्स बिछे है पीछे की तरफ हरे भरे पेड़ --

इस चित्र मे महिलाएं शादी मे दिख रही हैं कुछ घ कुछ गिफ्ट मिलते नज़र आ रहे हैं तो कुछ बहुत बड़ा कॉलेज का प्रोग्राम लग रहा है सबके हाथ --

इस चित्र में पीछे ऊंचे पहाड़ दिख रहे हैं सामने नीला आसमान हरे भरे पेड़ और एक व्यक्ति फोटो खिंचवाता नजर आ रहा है सामने कोई मशीन लगी दिख रही है नीचे की तरफ बहुत सारी रेत पड़ी हुई नजर आ रही हैं।